एक जैसे कपडे भी रख सकते हैं।

ये काफी बड़ी ये जगह है। जहां पर एक पंडाल लग रहा है। इसमें कुछ जैसे कि कुछ बंट रहा हो। लेडीज ज्यादा लो --

या फिर कुछ सुन रही है।

या फिर कुछ भी कर सकते है और --